इधर पर कई सारी सफेद कलर की लाइट भी दिख रही हैं।

जिसके बाहर दो आदमी निकल कर जा रहे हैं और उधर पर कई सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

और ऊपर का मौसम बड़ा ही अच्छा दिख रहा है।

और जिसकी चोंच का कलर ऑरेंज --

इस फोटो में कई सारी फाइल और--

कई सारे आदमी दिख रहे हैं।

यह अंकल दो कॉपी रखे हुए हैं।

चॉकलेटी कलर की टेबल रखी हुई है।

पहन रखी है और एक आंटी ने हरे कलर की साड़ी पहन रखी है।

उधर पर कई सारे अंकल लिख रहे हैं।

कार के बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है।

और ऊपर स्किन कलर की शर्ट पहनी हुई है।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

और वहां पर पीछे एक टीवी लगी हुई है।

और अंदर साइड में सफेद कलर की लाइट लगी हुई है।

दो तीन झूले लगे हुए हैं।

एक काले कलर की टंकी रखी हुई है।

इस फोटो में दो अंकल दिख रहे हैं।

यहां पर एक पेड़ पौधे की दुकान भी है।

एक मॉल दिख रहा है जिसके अंदर--

और यहां पर सफेद कलर की एक बहुत बड़ी दीवार भी है।

जिसके अंदर दो खिड़कियां दिख रही हैं।

और इस फोटो में कई सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक बोतल रखी हुई है।

इधर पर एक दुकान भी दिख रही हैं।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

इस फोटो में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा है।

इस फोटो में एक शोरूम दिख रहा है।

और कई सारे सफेद कलर की लाइटें लगी हुई हैं।